ये बहुत अच्छा है अअ पांदा है।

यहाँ पे रै गए भुना गया है जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सब यहाँ पे एक काटा वाले तार लगी है दी गई है जो कि गाय गरु न पार होके --

बहुत ही अच्छा है बहुत मस्त है दिखने में भी बहुत सुन्दर दिख रहे हैं इसकी नजारा भी बहुत अच्छे से बनाया गया है।